और यहां पर एक व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है।

अंदर की तरफ भी इस शॉप में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल --

इस महिला के पास में एक कंप्यूटर रखा हुआ है और यह महिला--

इस महिला के पास में सामने की तरफ एक मशीन लगी हुई है।

एक येलो कलर के कपल की फोटो लगी हुईं हैं।

एक जग रखा हुआ है एक ग्लास रखा हुआ है।

और एक प्लेट में पुलाव सर्व किया हुआ हैं।

कुछ प्लांट्स जमीन पर ब्लैक कलर की पॉलिथीन में लगे हुए दिख रहे हैं।

और सामने की तरफ गमलों में भी प्लांट लगे हुए हैं।

येलो कलर की लाइट्स लगी हुई है।

बेडरूम में एक ए_सी भीं लगा हुआ है।

पीछे की तरफ एक फाउंटेन चल रहा है और यहाँ पर इस फाउंटेन में ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है।

हमें बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

कुछ दुकान वाले दुकान लगाकर बैठे नज़र आ रहे है यह दुकान बुक्स की है।

यहां पर हमें एक इंडियन ऑयल का ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

और यहां पर एक पेड़ भी दिख रहा है।

अजीब अजीब तरह के ओवंस रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में हमें दो इलेक्ट्रिक सिटी के बड़े बड़े बोर्ड और मशीन्स नजर आ रही है।

यहां पर हमे एक टोल टैक्स दिखाई दे रहा है जोकि अभी बंद है।

और यहां पर टोल टैक्स के लाइन से केबिन बने हुए हैं जिसमें की येलो और ब्लैक कलर के पट्टे है।

खानवालकर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है जो की--

और यहां एक कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर हमें एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर मंगलम स्टोर्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है यहां बहुत कस्टमर भी दिख रहे हैं।

और यहां पर हरे भरे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां दीवाल पर हमें बहुत सारी वॉच नजर आ रही है यहां एक व्यक्ति रिसेप्शन पर बैठा हुआ है।